एक मस्जिद है। मस्जिद के पीछे बोहोत से पेड़ दिख रहे हैं। मस्जिद के --

की वो लड़की कैसे पहाड़ पे चढ़ रही है।

काफिरीन में यहाँ पे एक फ्लाईओवर भी दिख रहा --

हाथ में भी एम आइ की वॉच है और एक पीछे से लड़का देख रहा है उसके पीछे फैशियल किट है।

गंदा पानी हरा-हरा और कुरकुरे के पैकेट --

तेल लगावे जिनके आस-पास नाना नुकसान पहुचाये --

एक बंदा है वो प्रेस कर रहा है।

मस्जिद है एक वहां पे एक घड़ी टंगी हुई है नीले रंग के पिलर पे --

दुकान है चिप्स कुरकुरे की एक बस के ऊपर एक टायर पड़ा हुआऑटो खड़ा हुआ साइड में जिसमें यात्री चढ़ रहे हैं।

ऊपर से आते हुए एक ब्लैक एण्ड व्हाइट है एक येलो एण्ड रेड है और साइड में --

लड़का चेयर पे बैठा है। एक पीछे सोफ़े पे भी बैठा हुआ है लड़का --

और एक उनका लड़का है जो पीछे देख रहा है लिखा पढ़ी कर रहा है और एक --

एक मच्छी मार्किट है। मच्छी बिक रही हैं। एक मुसलमान मच्छी लेने आया है।

शॉप नंबर सितारा लिखा हुआ है।